बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं अलग बगल।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

कुछ टेबल व्हाइट कलर का है कुछ टेबल पीले कलर का है।

अगल बगल बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

यहां पर आरी का दृश्य दिख रहा है।

बगल में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं दीवाल बनाया हुआ है गेट लगाया हुआ है।

यहां पे बड़ा सा फील्ड है फील्ड में छोटा छोटा कंकड़ फेकें हुए हैं कुछ प्लास्टिक भी फेकें हुए हैं।